ढ़ेर सारे पेपर हैं।

एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

एक सुन्दर सा मंदिर है।

एक बड़ा-सा दरवाजा हे।

बड़ा-सा पेनडाल है।

सुंदर सा बड़ा-सा पंडाल है।

एगो बड़ा-सा टायर है।

ढेर सारे आदमी हैं।

टूटा-फुटा घर है।